और इसमें बहोत ही सूं खिस खिड़कियों की डिजाइनिंग बहुत ही सुन्दर है और सबसे ऊपर एक बाजा यानि चोंगा लगाया हुआ है।

जो यहाँ बेचने के रूप में रखा हुआ है।

इस पुराने बिल्डिंग के आगे एक पोस्टर है और उस पोस्टर में लिखा हुआ है भारत संचार निगम लिमिटेड ।

यह एक विद्यालय है। यह कोई ऑफिस है। इस विद्यालय के बाहर कुछ मोटर साइकिल और व्यक्ति लोग खड़े है।

और इसके दोनों तरफ एक ऊँची मीनार जैसा बनाया गया जो बोहोत ही सुन्दर लग रहा है।